कुछ लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने डांस कर रहे है।

ये दुकान रास्ते के साइड पर बना है।

जे कुछ डस्टबिन्स और ब्लू बकेट भी दिख रहे हैं।

एक कोने में सुखा घास दिख रहा है।

सामने पांव और दूसरे ग्रीन प्लांट्स लगे हैं।

बहुत सारे टेबल और कुर्सियां है जिस में ग्राहक बैठ सकते हैं।

उपर बिजली के तार या डेकोरेशन लाइट्स लगी हुई है।

ये डीलर सफेद रंग का बना हुआ है।

नीचे के स्थान पर अन्य बिजनस भी है जैसे डायमंड टेलर और एक राइस होटल ।

यह एक मेडिकल स्टोर की तस्वीर है जिसका नाम संजीवनी मेडिकल स्टोर है।

बीच में एक बड़ा वार्डरोब है जिसमें कपड़े टंगाये हुए है और और एक्सेसरीज रखी है।

बीच पर तीन पोस्टर्स लगा हुआ है जिसमें से एक पोस्टर पर काफी इज ऑलवेज से गुड आईडिया लिखा है।

सीलिंग पर फॉल सीलिंग लगा हुआ है एल_इ_डी लाइटिंग के साथ।

बिल्डिंग के कलर गोल्डन और ब्राऊन दिख रहे हैं।